दो-तीन लाइट जल रही हैं आजू-बाजू दो-तीन बिल्डिंग्स हैं।

बना है एक छोटी सी दुकान भी दिख रही है शूटर्स दिख रहे हैं दुकान के छोटा टेंपो भी खड़ा है बाहर--

एक पुल भी दिख रहा है उसके आजु बाजू झंडा भी दिख रहे हैं एक इंसान खड़ा है नीचे आजु बाजु घास दिख रही है सूखी वाली।

वाइट कलर का कलर को करा हैं ग्रीन ग्रास दिख रही हैं।

रेलवे स्टेशन है पानी की टंकी भी दिख रही है ब्लू कलर की टीम में रेलवे स्टेशन है।

रेलवे स्टेशन दिख रहा है लोहे के पाइप्स की दिख रहे है ऊपर केबल्स दिख रही है।